जैसे की मैं देख पा रही हूँ मुझे सामने खुला मैदान दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर कुछ चेयर्स भी दिख रहा है --

यहाँ पर मछलियों की बॉक्स रखी हुई है जो है नीचे रखी है--

जैसे की मैं देख पा रही हूँ मेरे सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है--

जैसे की मैं देख पा रही हूँ मेरे सामने फूड प्लाजा है --

सामने एक वाटर बोतल रखी हुई है और एक छोटा सा ग्लास रखा हुआ है मुझे यहाँ सॉस की बोतल भी दिख रही है।

बॉक्स दिख रहा है फैनस लगी हुई है लाइटस लगी हुई है --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ मेरे सामने एक वाइट कलर की बिल्डिंग है --

और उसके ऊपर मुझे अ ताड़ें दिख रही हैं --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ की मेरे सामने यहाँ पर बहुर सारे --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ मेरे सामने एक रूम है जिसकी दो सारी खिडकिया हैं --

उसके बगल में मुझे खडा हुआ आदमी दिख रहा है --

उसके सामने मुझे वेलकम लगा हुआ रेड कलर का पोस्टर दिख रहा है --

हडी भड़ी पेडे दिख रही है उसके नीचे मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर की --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ की मेरे सामने एक बड़ी सी फील्ड ह--

जैसे की मैं देख पा रही हूँ मेरे सामने एक वाइट कलर की बिल्डिंग है --

पोल के बगल में मुझे छोटी छोटी झाडिया दिख रही है मुझे खुला आसमान दिख रहा है --

अ पोस्टर के नीचे मुझे छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे हैं पेड़ों के बगल में मुझे दो झंडे लगे हुए दिख रहे हैं।